यह तस्वीर एक जर्ने की है जहाँ पर--

ओ दरवाजा ब्लैक कलर का लगा हुआ है।

इस सड़क में बीच में येलो पट्टी--

दुकान का नाम है एल ओ पी ई आर ए लोपेरा --

बगीचे की है जहां पर पेड़ लगे हुए हैं।

नाम लिखा है एन_एच_ए_आई नाया।

यह तस्वीर एक सड़क की तस्वीर है सड़क पर बहुत सारे कबूतर--

यह तस्वीर भारतीय ढाक घर के बाहर से ली गई है।